आस बादल दिखाई दे रहा है सूरज डू --

और सामने एक लकड़ी दिखाई दे रही है और नट के स्क्रू काफी बड़े बड़े दिखा --

एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान में काफी सारे ग्रीटिंग कार्ड रखे हुए हैं। फूल रखे हुए हैं।

और बिन अ टाइड रखा हुआ है। काफी सारे पैकेट दिखाई दे रहे हैं। कुछ लाल रंग के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी दिखाई दे रहे हैं जो कुछ पढ़ते हुये दिखाई दे रहा है। एक माइक लगा हुआ है काफी सारे पर्दे लगे हुये हैं।

नीचे की तरफ में शुभ-लाभ लिखा हुआ है और नीचे ऊं बना हुआ दिखाई दे रहा --

गोल गोल दिखाई दे रहा है और लाल रंग का है। एक स्टूल भी लाल रंग का दिखाई दे रहा है।